पार्क में झूला लगा हुआ है।

पिक्चर में दो लड़कियां खड़ी है।

बेंच के पास एक डस्टबिन है।

ऑफिस के बाहर कार खड़ी हुई है।

पीछे हरे भरे पेड़ लगे है।

कुछ लोग चेयर पर बैठे हुए हैं।

यह एक शोरूम की पिक्चर है।

वर्कशॉप में कार खड़ी हुई है।

यह असोक चक्र की पिक्चर हैं।

खेत में पानी भरा हुआ है।

टेबल पर प्रेस रखा हुआ है।

हरे पौधे भी लगे हुए हैं।

दो पेड़ भी लगे हुए है।

एक बेड भी रखा हुआ है।